और बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है वो नदी--

वहां पे राम दिखाई दे रहे हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति दिखाई दे रही--

और झरना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और सुंदर तरीके से वहाँ पे झरना बना हुआ है। और उसके आगे-पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे एवं पहाड़ बने हुए हैं।

नीचे मे रखा हुआ है और उसको एक आदमी अपने द्वारा--

यह एक नेचुरल केयर है जहां पे बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

छोटे बच्चों के लिए भी बहोत अच्छे अच्छे सूट अं दिख रहे है जोकि--

यहाँ पे कुछ मछलीया रखी हुई हैं जो कि अभी अभी ताजा ताजा लाये हुए हैं।

अथोथी एक दो तीन चार पांच छे सात आठ बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही--

और बहोत बेहतरीन तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं।

कॉफी का नाम बहोत सारे अच्छे से दिखाइ दे रहा है। और उसके पीछे साइड कॉफी का जो बैकग्राउंड है पर्दा लगा हुआ है। बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है। जिस --

बहुत मस्त सुंदर से कपड़े दिखाई दे रही है सामने में एक--

ऊपर से पानी नीचे की ओर बह रहा है।

यह एक फुटबॉल ग्राउंड है जहां प बहुत सारे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें और वहां पे--

यहां पे खड़ा हुआ है यहां पे ऊं साइड में--

यह एक कपड़े की दुकान है जहां पे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पे--

अच्छे अच्छे कलर की साड़ियां हैं यहां पे नारंगी पीली हरी नीली।

अह डिब्बे में बहुत सुंदर तरीके से यहां पे सजा करके रखा हुआ है सामने दिया जलाया गया है।

यह एक चश्मे की दुकान है जहां पे बहोत सारी चश्मे दिखाई दे रहे है।

जहां पे बहोत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और बहोत सुंदर तरीके से उनको बनाया गया है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है।

जोकि बहोत सुंदर प्रतीत हो रहा है और यहां पे बहोत साफ सुथरा और बहोत ही अच्छा स्वच्छ वातावरण दिखाई दे रहा है।

और बहोत सुंदर तरीके से वह दिख रहें हैं और अच्छा ही दिख रहा--

कुछ महिलाएं पीछे खड़ी हो कर सिख रही है कि नृत्य कैसे किया जाता है।

अपने दौड़ लगाने के लिए आए हुए हैं सुबह सुबह ग्राइम--

और यहां पे बहुत अच्छे तरीके से सभी जने अपने योगा द्वारा प्रदर्शित दिखाई दे रहे हैं।

साफ सुथरा एवं अच्छा दिखाई दे रहा है।

नहीं एक अमचूर का जो दुकान हैं। जहाँ पे उनका प्रचार दिखाई दे रहा है। और एडवरटाइजमेंट दिखाई दे रहा है।